इस मस्जिद में बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए यहां पर शाम को अजान भी दी जाती है।

बहुत सारे लोग आते हैं किताबों को खरीदने के लिए यहां पर सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध होती है यहां पे --